इस फोटो मे कुछ काले कलर का नजर आ रहा है लग रहा है ये किसी पेड़ से --

बहुत सारे सीसे भी लगे हुए हैं उस बिल्डिंग में और जो ये दो आदमी यहाँ बैठे हुए हैं।

और आदमी जो है पीले कलर लाल कलर की जो है शर्ट पहना हुआ है।

घास भी है बीच में कोई रास्ता गया है ऐसा लग रहा है और कोई हाथी टाइप का कुछ लेटा हुआ है वहाँ।